बहोत से पेड़ हैं जो बहोत खूबसूरत लग रहे हैं।

टेबिलों पर व्हाइट और रेड कलर का कपड़ा बिछा हुआ है। कुर्सियों पर व्हाइट कलर का है।

यह एक युनिवर्सिटी है। यहाँ पर एक वाई-फाई लगा हुआ है।

यह एक चर्च है जो बहोत अच्छी लग रही है। ए --